सामने एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। एक आदमी येलो कलर की शर्ट पहने हुए खम्भा पकड़े हुए दिखाई दे रहा है। सामने बहुत सारे साइकिल वाले दिखाई दे रहे है।

और ये एक टेलर की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें सामने दीवाल पर सरस्वती माता का कैलेंडर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक आदमी गेट पर और एक औरत झाड़ती हुई दिखाई दे रही है सामने लाल कलर की मैट बिछी दिखाई दे रही है।

मुझे एक ग्राउंड का जंगल दिखाई दे रहा है जंगल में मुझे बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है सामने छोटी-छोटी प्लाट रखे हुए दिखाई दे रहे है ऊपर उनमे हरी-हरी पत्तियां दिखाई दे रही है।

मुझे एक जमीन दिखाई दे रही है जमीन के अंदर दरार पड़ी हुई दिखाई दे रही है और बहुत सारे स्टील के बुलडोजर दिखाई दे रहे हैं।

दूरी पर एक बल्ब दिखाई दे रहा है किनारे पर सीमेंटेड सोफा डले दिखाई दे रहे है कुछ दूरी पर पेड़ के यहां डस्टबिन रखा दिखाई दे रहा है।

अ-मुझे एक पहाड़ दिखाई दे रहा है पहाड़ बहुत ऊँचा दिखाई दे रहा है पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए कुछ आदमी दिखाई दे रहे है कुछ पहाड़ खिसला-खिसला सा दिखाई दे रहा है।